जिसके ऊपर गुलाबी पेंट गिरा हुआ है।

एंड यहाँ पर उस पर भी बोहत छोटे-छोटे पेड़ दिखाई दे रहें हैं।

एंड ये किसी पार्क का फोटो है।

जो की म किसी गेम के लिए बनाया गया है एंड इसके पास काफी सारे पेड़-पौधे हैं।

एंड सामने की तरफ में काफी सारी घर बने हुए है।

और ग्रेप्स एंड बहुत सारे फल रखे हुए है कुछ फल टांग भी रखे है ।

जिसके पास काफी बड़ी-बड़ी टंकीया रखी हुई है ।

ऐं काफी बड़ा गेट है एंड यह --

येह काफी सारी कपड़े है।